छ: लड़के नोट्स बना रहे हैं कुछ लड़के बोर्ड के तरफ देख रहे हैं टीचर बोर्ड पर लिखा- लिखने का काम कर के बच्चों को समझा रहे --

विसर्जन हेतु सभी अबीर-गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं।

आर गैरेज में मैकेनिक ऑटो बनाने का काम कर रहा है और --

के लिए देख रहा --